टेलीविजन का डिश भी लगा हुआ है चार ठो --

यह एक ठो रेस्टोरेंट के जैसा लग रहा है।

उस पार बहोत बड़ा एक ठो पहाड़ दिखाई दे रहा है।

डेस्क और ब्रेंच बहुत सारा रखा है।

दुकान का अंदर में थाड़िया में बहुत सारा सामान भी रखा हुआ है।

बहोत वैराइटीज का सामान रखा हुआ है अच्छे तरीके से सजा के रखा है।

और घर का काला नीला और सादा कालार करके भी रखा है।

बच्चे लोगों का सामने में और दो आदमी खड़ा दिखाई दे रहा है।

एक दो लाल कलर वाला है पुतुल भी दिखाई दे रहा है।

और एक साइड में और एक ठो टेबल और बैठने के लिए कुर्सी भी है।

यहां पे बहोत सारा आदमी जमा हुआ है।

टेबुल दोनों का बीचो बीच में दो ठो छाता लगा हुआ है।

और पीछे में दा मोमोज लिख के रखा है।

और नीचे में केक में बैलून से सजाया करके रखा है।

ये लोग बिजली के द्वारा क्या जुड़ाई कर रहा है।

इसका नाम चिंगड़ी है यहां पर बहोत सारा चिंगड़ी मछली रखा है।

और ये सब आदमी ह रंगों से भरा हुआ है।

रेलवे स्टेशन पर अभी एक रेल खड़ा हुआ है।

अधिका उस पार में बहोत बड़ा पहाड़ दिखाई दे रहा है।

बाजार में बहुत सारा मछली भी रखा है दुकानदार लेके बैठा है।

यहां पे एक बड़ा समंदर दिखाई दे रहा है।

नाव में दो कार्टून रखा हुआ है।